और इसमें तिरंगे लग रहे हैं झंडे लग रहे हैं और लोहे के और स्टील के ग्रिल लग रहे हैं।

इस चित्र में एक घर बना हुआ है जिसमें व्हाइट कलर हो रहा है और ऊपर छत में लोहे की टिन पड़ी है।

और इसमें वाइट और और कांच के शीशे लग रहे हैं।

इस पर एक बोर्ड लग रहा है और छोटे छोटे पौधे हैं और इसमें एक लोटा भी रखा है।

और इधर ऊपर भी साइकिल रखी हुई है और नीचे भी।

यह एक जंगल है। इसमें लोहे के नाव है। इस पर एक लड़का खड़ा है।

और एक कुर्सी मेज पर एक कैलेंडर रखा हुआ है।